और सामने भी बहोत सारा घर है बिल्डिंग सब है।

का सूर्य है जो डूबता हुआ है और उसमें एक कमल का प्रतिबिंब बन रहा है।

और ऊपा ऊपा ऊपर जाने के लिए सीढ़ी बनाया गया है नीचे कारपेट सब बिछाया गया है।

और बगल में भी दो गो और स्टैचू हैं यह पानी का स्तंभ है।

ये टेंट - वेंट लगा हुआ है।